सामने आसमान है खुला उसके अलावा तार एक बिजली का खम्भा है।

यहाँ हामरे सामने म्यूजियम है जिसमे बहुत सारे पुराने सामान रखे हुए है जिसमें --

कुछ पुराने डंडे और कुछ अलग-अलग --

सामने से एक लाइट लाय लाइटो की छ --

यहाँ पे हमारे सामने पेड़ है पेड़ के दो है पत्तिया है कुछ पत्ती झुकी हुई उसके अलावा नीचे पानी है।

यहां पे हमारे सामने स्लाइट है। जो पीले कलर के आसमानी कलर के है उसके अलावा हरे कलर की और सफेद कलर की है।

ग्लास है जो एक के ऊपर एक है लाइन से उसके आलावा नीचे के साइड ऊपर के साइड और --

यहाँ पर हमारे सामने कुछ बच्चे हैं स्कूल के जो बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं इसके अलावा एक व्यक्ति एक बच्चा है जिसने सफ़ेद कलर की ड्रेस पहन रखी है।

और लाइटे है ऊपर बल्ब ऑन है सफेद कलर के सामने व्यक्ति ऑन खड़े --

जमुई लिखा हुआ है जो नीला अक्षरों से है उसके अलावा सामने रोड है जो कच्चा है सामने गाड़ी है और --

गेट है जिसमे जमुई सेंटर लिख रखा है और ये खम --

और गा उ हरियाली है और व्यक्तियों है। जो सामने खड़े है एक व्यक्ति है जिसके--

यहाँ पर हमारे सामने मेला लगाया है जिस पर बड़े-बड़े झूले ऑन है झूले में रंगीन --

जो काले कलर की और अ पीले कलर की है उसमे अनावश पीछे --

अ बड़े-बड़े दरवाजे हैं सामने तीन हवन नीचे हरे कलर का कारपेट बिछा हुआ है कुछ व्यक्तियों ने जो खड़े हैं।

जमुई बॉर्डन लगा हुआ है जिसपे चेक बोर्ड पे बॉम्बे राइट्स लिखा हुआ है ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है द स्टूडेंट आइकू लिखा हुआ है नीचे --

पतंजलि का है टीथ क्लीनिक का है सामने व्यक्तियों ने जो खड़े हुए हैं --

कुछ पेड़ उड़ है जिनमे पत्तियां है कुछ सूखे से ओन है और लम्बे-लम्बे से है ये।

कुछ छोटे-छोटे से पेड़ ऑन है उसमे ना उ काले-काली है परछाई है काली।

काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है उसमे ना दीवाल पे --

ऊपर हमारे सामने वाटर पार्क है जिसमें स्लाइडे हैं चिड़िया है जिसमें लोगन चढ़ रहे हैं।

जो पेड़ है बड़े-बड़े उसके अलवा ऊपर खुला आसमान है एक --